एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने सफेद रंग की शर्ट पहनी है ब्लैक कलर की पैंट पहनी हैं।

और जो दीवार है ना वो गुलाबी रंग कि दिखाई दे रही है ठीक है यहां पे कुछ नूडल्स के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं।

जैसे इनके पास देखो स्टेशनरी का सारा सामान बुक्स नोटबुक्स पेन पेंसिल रबड़ इरेजर सौंपनर --

पीछे वह कार दिखाई दे रही है दो कार है सफेद रंग की एक कार है --

और अ ग्राउंड है ठीक है वा जा पे मिट्टी है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

अब ग्राउंड में काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ठीक है कुछ बैठे हैं कुछ खड़े हैं।

इस फोटो मे सामने लिखा हुआ है वेलकम टू प्लेशर ।

इस फोटो में पौधे दिखाई दे रहे हैं घास दिखाई दे रही है मिट्टी है काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ठीक है।

और भाई ये एक पार्क का फोटो है क्योंकि देखो पार्कों में ये सब होता है और तो कहीं होता नहीं है।

और हिंदी मे भी लिखा है नीचे लिखा हुआ है यहां पर--

बैंगनी कलर के कुछ पौधे लगे हुए हैं यहां पर ठीक है।

बाहर एक येलो कलर का बड़ा सा पोस्टर लगा है लिखा है--

ठीका नीचे लिखा नजदीक के_वी_एम कॉलेज लड़ात रोड ।

दिन का समय है और सामने और झूले भी दिख रहे हैं बहुत सारे झूले जो हैं ना वो स्लाइडिंग वाले झूले हैं।

और एक लड़का है जिसने काले रंग की शर्ट पहनी है काले रंग की पैंट और काले रंग की जूते पहने है।

और एक बोर्ड दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोग--

खड़े हुए दिखाई दे रहे अंकल पत्थरों पे बैठे हुए हैं।

इस फोटो में हस्बैंड वाइफ खड़े हुए हैं।

सफेद रंग के कुर्ते पहने हुए हैं और पजामा पहना हुआ है लड़कियों ने भी लड़ाकों ने भी।

इस फोटो में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ घर भी दिख रहे हैं थोड़ी दूरी पर।

ठीक है और दिन का ही समय है यहां पे पेड़ पौधे ज्यादा दिख रहे है घास भी दिखाई दे रही है।